और दो डमियाँ रखी हुई हैं एक डमी बैठी हुई है एक डमी खड़ी हुई है।

और दीवारें सफेद कलर से बुती हुई हैं।

अंदर फिरोजी कलर की लाइट लगी हुई है बाहर ग्रीन कलर की लगी हुई है।

पीछे एक छोटा सा शोरूम दिखाई दे रहा है।

गांधी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल नजर आ रहा है।

सामने छोटी-छोटी घां सोककर छोटा सा पार्क बनाया गया है।

और यहां पर सुनसान पड़ा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक बेंक दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें पुराने दो घर दिखाई दे रहे हैं।

पुट प्लो क्लिनिक एंड नर्सिंग होम --

सामने एक चट्टान दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें रंगा पंजाब नाम का एक ढाबा दिखाई दे रहा है।

नीले कलर की चांदरों से शेड ढला हुआ है।

पीछे एक रक्षा खड़ी हुई है जिसका कलर नीला है।

और पिलरों पर डंडे बंधे हुए हैं।

चट्टान पर एक लड़का बैठा हुआ है।

और इस चट्टान से पूरा शहर दिखाई दे रहा है।

उसके बाजू में घर बना हुआ है। वह भी सफेद कलर का है।

और यहां से एक चादरों का शेड भी दिखाई दे रहा है।

और तीन बच्चे मिलिट्री के एक ड्रेस पहने हुए हैं।

बाहर एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

और सामने एक पेशेंट दिखाई दे रहा है।

और ऊपर एक फोटो लगा हुआ है।

और टैटू प्लेनेट भी लिखा हुआ है।

इस पर एक काली टंकी रखी हुई है सेंटेक्स की--

और लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं।

इस चित्र में हमेंबहुत सारी फोर व्हीलर कारें खड़ी दिखाई दे रही हैं।

और यह कारें मल्टी के पास खड़ी हुई हैं।

इस चित्र में हमें बहुत तरह की सब्जियां दिखाई दे रही हैं।

सामने दो कुर्सियां रखी हुई हैं एक सफेद कलर की एक ग्रे कलर की।

जिसमें एक लाल कलर के पर्दे डले हुए हैं।

साइड में एक अंकल लाल कलर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

सामने गार्डन में एक झूला लगा हुआ है।

चारों साइड पेड़ लगे हुएं हैं और हरी हरी घास उग रही हैं।

इस हॉस्पिटल का नाम लक्ष्मी हॉस्पिटल है।

इस चित्र में हमें एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

एक लाल कलर की कुडसी रखी हुई है।